पीछे एक टिन सेट पड़ा हुआ है कई सारे आदमी बैठे हुए हैं।

यह एक फैक्ट्री है फैक्ट्री में बहुत सारे आदमी हैं जिन्होंने लाल रंग की ड्रेस पहन रखी है।

जो कांच के गेट बना हुआ है गेट के पास में दो मूर्तियां रखी हुई है।

एक दीपक जल रही है जिसके ऊपर लोटा रखा हुआ है पास में बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं।

साइकिल के पास में एक बिजली का खंभा लगा हुआ है बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं खड़े हैं।

एक छोटी मेज रखी हुई है मेज पे बैग रखी हुई सामान रखा हुआ है।

कई रंगों में रंगे हुए हैं मंदिर के अंदर मूर्ति है व गेट है।

इसके हाथ में मोबाइल फोन है पीछे कुर्सी पड़ी हुई है ऊपर एक टीन सेट पड़ा हुआ है बोर्ड लगा है।

मैदान है मैदान में छोटी छोटी हरी घास लगी हुई है मैदान में बहुत सारे बच्चे और आदमी बैठे हुए हैं।

पीछे दीवाल है। दीवाल का रंग नीला है। दीवाल पे कलेंडर टंगे हुये हैं। एक लाल रंग का कपड़ा टंगा हुआ है।

बहुत सारे मकान है मकान की दीवार का रंग पीला है बहुत सारे खिड़कियां लगी हुई है जो कांच की बनी हुई है।

इसपे हेलमेट लगे हुए हैं कई सारे आदमी औरत खड़े हुए हैं।

एक दरवाजा है जो लकड़ी का है इसके बीच में कांच की अलमारी सी बनी हुई है।

यह एक दुकान है दुकान के अंदर एक कांच का काउंटर बना है काउंटर के ऊपर बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं।

झरने के पास में एक बड़ी दीवाल है दीवाल पे हरे घास लगी हुई है।

यह एक क्लासरूम जिसमें बहुत सारी बैठने वाली मेज और टेबल रखी हुई हैं जो सफेद रंग की हैं।

इसमें बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं एक लड़का है जिसने पीले रंग की टी शर्ट पहन रखी है।

नदी के पास सीढ़ियां बनी हुई हैं। सीढ़ियां पे एक आदमी लेटा हुआ है।

मंदिर है मंदिर की दीवाल है दीवाल हल्के पीले रंग की है दीवाल पे भू लाल रंग की पट्टियां बनी हुई है।

एक जे_सी_बी खड़ी हुई जेसी के में पास बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए हैं।

पीछे एक आदमी है जिसने हाथ में ब्लोवर पड़ा पकड़ रखा है।

वाटर पार्क के पास में एक टीन सेट पड़ा हुआ है यहां पे एक छाता लगा हुआ है।

एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे सुरक्षा के पांच मंत्र लिखे हुए है।

बाहर खम्भा लगा हुआ है खंभे के पास में नीले और सफेद रंग के गुब्बारे लगे हुए हैं।

मकान के उपर एक टीन सेट पड़ा हुआ है एक खिड़की लगी हुई है।

एक दुकान है दुकान पे काउंटर रखा हुआ है। काउंटर के पास में आदमी खड़े हैं।

दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है एयरटेल फोर जी वोडाफोन बुक वर्ड लिखा है।

जल रही है मकान के बाहर प लोहे की ग्रिल लगी हुई है।